मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है हाल में घड़ी लगी हुई है बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है और यहां पर मुझे दो आदमी बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बेंच रखे हुए दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे ग्राउंड दिखाई दे रहा है और आजू-बाजू में लगे बनी हुई दिखाई दे रही है और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक टंकी सी बनी हुई दिताई दे रही है हरे हरे पेड़ दिताई दे रही है दिताई दे रए ए गित्ती दिकाई दे रही ए फावड़ा धरा हुआ दिताई दे रहा है ।